जिसके ए टायर पे मिट्टी लगा हुआ है।

काला रंग का कुर्ता पजामा पेहन रहा है कोई सफेद कलर का पहन रहा है।

ऊपर लाइट दिखाई दे रहा है प्लेयर लोग खेल रहा है।

एक बैग रखा हुआ है।

और मौस का फोटो दिखाई दे रहा है।

ग्रेप्स का फोटो दिखाई दे रहा।

साइकिल डिखाई डे रहा है और बंबू भी डिखाई डे रहा है।

बैनर भी दिखाई दे रहा है।

साइड में एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।

में बहुत सारे पहाड़ भी हैं।

कुछ फोटो फ्रेम लगाया हुआ है।

एक बिल्डिंग दिख रहा हैं।

दो दुकान दिखाई दे रहा है।

और बैनर दिखाई दे रहा है।

एक लाइट दिखाई दे रहा है।